सड़क है यह सड़क के चारो तरफ बहुत छोटे-छोटे दुकाने हैं ।

इसाई धर्म के लोग यहाँ पर आकर प्रार्थना करते है। एवम बोहोत सारे आदमी यहाँ पर शादी विवाह की --

बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं यह आदमी यहां से वहां आती-जाती है एवं बहोत से --

यह मंदील में पत्थर की प्रतिमा भी बनायी गयी है यह प्रतिमा काले है यहाँ पर बहोत सारे--